और पाइप भी है और बहुत सारी चीजे रखी हुई है स्टेपनी भी रखी हुई है कुछ आदमी ऊपर देख रहे--

महिलाओं के लिए अलग काउंटर है पुरुष के लियर अलग काउंटर है।

एक लोडिंग ऑटो बाहर खड़ा है बाइक खड़ी है साइकिल खड़ी है घर के पास कार खड़ी है।

यहाँ आग की भट्टियां है जिसमें आग जल रही है।